और मार्बल्स की मार्बल्स दिखाई दे रहे है।

हमें यहां पर बैटरी वाला रिक रिक्शा दिख रहा है जिसका कलर हरा है।

हमें यहां पर एक कटा हुआ सा जमीन दिखाई दे रहा है जिसपे खेती होई हुई दिखाई दे रही है।

यह एक ज्वेलरी शॉप है यहां पर हमें सोने चांदी की चीजें दिख रही हैं।

एक आदमी और चाय का कप लिए हुए अपनी हाथ में दिखाई दे रहा है।

ऊपर से एक हरे कलर का पेड़ दिखाई दे रहा है।

गौतम बुद्ध की स्टेच्यू दिखाई दे रहा है।

हमें यहां पर कुछ औरते नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं।

इसमें चॉकलेट्स हैं कुछ साबुन हैं पंखे दिख रहे हैं।

यहां पर हमें सफेद और काले कलर का टाइल्स दिख रहा है।

हमें यहां पर काम चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे काम चल रहा है।

अ अगली सलक् सड़क पर पान छे गाड़िया दिखाई दे रही है।

हमें यहां पर हरे कलर का डेकोरे हरे कलर से फूल बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।